व्हाइट कलर से पीछे की तरफ लोहे की एक इमारत खड़ी हुई है।

यहां पे एक अलमारी है जिसमें काफी सारी दवाईयां रखी हुई हैं।

बहुत सारे पतीले दिखाई पड़ रहे हैं बड़ी बाल्टी दिखाई पड़ रही है।

ये एक गैराज है जिसमें एक वाइट कलर की शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहने हुए चश्मा लगाया हुआ आदमी है।

यहां पे एक बड़ा सा डोर है जिसमें काफी सारे आदमी अंदर से आते हुए दिखाई--

एक बाइक खड़ी हुई है उसके पास में एक लेडिस खड़ी हुई जिसने रेड कलर का दुपट्टा डाल रखा--

कुछ मकान बने हुए हैं जो व्हाइट कलर से पुते हुए हैं एक ब्लू कलर --

यहां पे दो तीन डिब्बे दिखाई पड़ रहे हैं जो प्लास्टिक के हैं। इनके ऊपर स्टीकर चिपके हुए हैं।

और एक बड़ा व्हाइट कलर का कॉलम बना हुआ एक कॉलम में--

पीछे डमरू वाली फर्श बिछी हुई है पास में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे टाटा मोटर्स लिखा हुआ है।